एक सुंदर से गार्डन के अंदर पार्किंग के अंदर एक स्विफ्ट गाड़ी खड़ी है आस पास बहुत सा सारे नीम के पोधै दिखाई दे रहे हैं।

यह एक सार्वजनिक जगह पर बाइक पार्किंग करने के लिए जगह बनाई गई है जिसके अंदर बहुत जादी --

इसके अंदर सात लोग योगा कर रहे हैं जिसके में से तीन लड़कियां और चार लड़के हैं और पीछे बड़ा सा ए_सी लगा हुआ है।

सामने एक दुकान का वर्णन है जिसका नाम है बजरंग बाथ एंड स्टे फ्री यानी इसके अंदर घर में यूज होने वाले --

यह एक इलेक्ट्रिक सामान का शोरूम है जहां पर ए_सी कूलर फ्रिज और वाशिंग मशीन वगैरा मिलती है।

एक बड़ा हिरण दिखाई दे रहा है और कुछ छोटे छोटे हिरण दिखाई दे रहे हैं ये एक बिश्नोई समाज का --

सामने एक वन क्षेत्र का गेट दिखाई दे रहा है जिसके आगे बहुत ज्यादा पौधे बने हुए हैं।

यह एक राजस्थानी होटल का नजरिया है जहां पर रहने की उत्तम व्यवस्था है और ये गांव के क्षेत्र में बना हुआ है।

और ये एक प्राचीनतम होटल का नजरिया है क्योंकि यह राजस्थान में बनाए जाने वाले होटल है और शांत और बहोत ही शुष्क वाता --

बगीचे का वर्णन है ये या तो फूलों की दुकान है जहां पर पौधों का सेल किया जाता है ये पौधे भी बिकावत करता है।

और बहुत अच्छा डेकोरेट किया गया है येलो एंड व्हाइट फूलों से और कुछ रेड एंड पिंक फुल भी लगाए गए हैं।

सामने ये जेव देवल वाला बस स्टैंड का वर्णन किया गया है जो किसी हाईवे पर बना हुआ है यहां पर बसे रूकती है।

कार को ठीक किया जा रहा है जो आंध्रप्रदेश की पासिंग है जिसके आगे का एक टायर निकाला हुआ है और बोनेट खोला हुआ है।

सामने एक डाल मियां हेयर एंड ब्यूटी सैलून का चित्र दिखाइए दे रहा है जिसके पास में श्री कपिल स्वीट होम है।

यह एक सार्वजनिक हॉस्पिटल का दृश्य है जहां सामने एक गवर्नमेंट नर्स बैठी हुई है और लैब जांच कर रही है मतलब --

यह एक इंजीनियर कॉलेज का दृश्य है जो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाई करवाता है जो ये बड़ा --

सामने एक हेयर सलून की दुकान का नजारा दिखाई दे रहा है जो एक बाल काटने की दुकान है और यहां पर फेशियल किया जाता है।

यहां पर सिटे लगी हुई है यह एक ओल्ड हाउस के अंदर बनी है और परदे लगे हुए हैं।

सामने एक प्राचीनतम हवेली बनी हुए है जो किसी महराजा के टाइम हो सकती है।

सामने एक कैफे का नजरिया है जिसके अंदर कैफे में चार तस्वीरें लगे हुई हैं और चार लोग बैठे हुए हैं एक पांच सौ भी दिखा रहा है।